और वाइट एंड ग्रीन कलर की---

वाइट रंग की गेट है।

एक आदमी हेलमेट लगाया हुआ है बॉस है।

एक रूम है रूम के बाहर अंदर खिड़की है।

बोलो चिमकी पीछा है।

बरबल है टाइम से ।

और जिसे कि काउंटर है।

साइड में भी लगी अच्छी और---

डी_एस_पी सोडा लिखा है कॉफी शॉप लिखा है।

ये कोई डांस कॉम्पिटशन है।

क्वालिटी वाल लिखा है।

अरे कुछ कुछ सामान भी है ।

औंरेज रंग की हे फुल हे औंरेज ---

पीली नंबर प्लेट है।

जो और की कपड़ा पहना है।

और कुछ कुछ आदमी बात कर रहे हैं।

जो पिले ब्लैक है।

लड़की है और एक आदमी है।

डाइनिंग टेबल है कुछ डिजाइन है।

पेड़ पौधा है लाइट है।

लकड़ी के ऊपर आदमी है।

दिवाल के ऊपर किड़की है।